फोटो क्लिक करवा रहा है।

फोटो खिंचवा रहा है। काफी अच्छा दृश्य है यह।

जैसा कि हम देख रहे हैं यह एक --

और काफी अच्छा दृश्य है और सजावट भी काफी अच्छी है यहां की --

और उसमें व्यक्ति चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

यह रात का दृश्य है और यहां पर कैंडल और अगरबत्ती जल रही है जो --